यह किसी ऑफिस दिख रहा है जिसमें उठे बैठे हुए दिख रहे हैं कुछ व्यक्तियों ने टोपी पेहेन कर रखी हुई है ऊपर एक डिजाइन वन बनी हुई है।